फल लगे हुए है सुंदर से ये फल दिख रहे हैं।

और ये सुंदर सा मंदिर दिखाई दे रहा है सुंदर सी प्रतिमाये दिख रही है ये।

सामने पेड़ दिख रहे हैं बड़े से वो कन्डे दिखाई दे रहे हैं। लकड़ियाँ रखी हुई दिख रहीं हैं। ये --

हेल्थ एवं सेंटर लिखा हुआ है। कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं। कुछ लेडीज जेंट्स बाहर खड़े हे । मास्क लगाए हुए हे ।

इनको पीले कलर से पेंट किया हुआ है ये। इनको आधा सजाया हुआ है और अच्छी सुंदर-सी मूर्ति दिखाई दे रही है। सामने प्रतिमा रखी हुई दिख रही है ये।

हेल्थ एवम् वेलनेस सेंटर दिखाई दे रहा है।

और ये बड़ा -सा एक हॉल दिख रहा है सुंदर -सा --

ये नीचे कुछ लोग खड़े हुए हैं उपर बोर्ड लग रहा है एच.डी.एफ.सी. बैंक का।

नीचे बँक के बाहर कुछ लोग खड़े हुवे दिखाई दे रहे हैं। लाइट जल रही है तीन।

और ये एक लड़का बैठा हुआ है सामने कैप लगाए।

एक ट्राली खड़ी हुइ है नीचे ही है बाहर।

पहाड़ी से बोहोत बड़े-बड़े झरने बेहते दिख रहे है ये।

हरा सा भी है ये और इसमें पानी भी भरा हुवा दिखा रहा है। एक लड़का खड़ा हुवा है बीच में ये।

बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुइ है ये।

एस.बी.आई बैंक का बोर्ड लग रहा है। एस.बी.आई बैंक लिखा हुआ है।

ट्रैक्टर में पीछे खेतों की मशीन लगी हुई है। उसमें खेत में चला चलाने वाली --

बँक में कुछ लोग बॅंक के बाहर खड़े दिख रहें हैं दो तीन लोग।

ये एक गाड़ी में डी.जे. लगा हुआ दिखाई दे रहा है म्यूजिक सिस्टम लगा है।